इसके बगल में एक छोटा सा और ड्रम दिखाई दे रहा है।

और उसके पीछे एक शीशे वाला डाइनिंग टेबल दिखाई दे रहा है।